के स्टोर है के ऊपर तीन ए.सी. के आउट डोर रखे हुए हैं उस पर लिखा है अनुपम किराना।

साइड नीचे की तरफ दीवार जमीन पे घास है और ऊपर की तरफ ग्रीन सा पेन्ट है और पेड़ लगा हुआ है और उसके पीछे घर बने हुए है और पीछे पेड़ लगे हुए है।

सुशील फैशनस लिखा हुआ है येल्लो कलर से किड्स वियर लिखा हुआ है लेडीज वियर लिखा है मेंस वियर लिखा है।

साइडों में वाइट कलर से और येल्लो कलर से लिखा पर पेंट --

एक आदमी है जो कि नाव चल रहा है। ये एक आदमी उसके पीछे बैठा है। वो भी नाव चला रहा है। नाव येलो कलर की है वाइट कलर की है ग्रीन कलर है।

घर का एरिया बनाया हुआ है प्लॉट का । उसके आस पास चॉक से व्हाइट बना हुआ है । आस-पास रस्सी से फ्रेम किया हुआ हे ।

ये बुड्ढा एक टी-शर्ट पहन के खड़े हुए हैं ऑटो का स्टैंड पकड़े हुए हैं ऑटो पीले कलर का और दो हरे कलर का है ऊपर बोर्ड लगा हुआ है।

लिखा हुआ है साइडों में भी दुकानें होंगी एक दुकान के सामने बेन बेन्च रखी हुई है।

एक साइड में बनी हुई है नीचे जमीन पे टाइल्स लगी हुए हैं पीछे की तरफ पेड़ लगे हुए हैं एक और दीया बना हुआ है फूल रखे हैं।